ये एक गुफा दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमें कुछ झंडे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं बड़े-बड़े पत्थर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं साथ ही अंदर में हमें काफी अंधेरा नजर आ रहा है।